ब्लेंडर ट्यूटोरियल की श्रृंखला में आपका स्वागत हैं
यह ट्यूटोरियल नेविगेशन कैमरा व्यू के बारे में है
हम सीखेंगे कि ब्लेंडर 259 में कैमरा नेविगेट कैसे करें
यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है और आवाज वोरा द्वारा दी गई है
यह ट्यूटोरियल देखने के बाद हम सीखेंगे कि नए कैमरा व्यू के लिए कैमरे का लोकेशन कैसे बदलें
कैमरा व्यू को रोल पैन घुमाएँ डॉली और ट्रैक कैसे करें
और फ्लाई मोड का उपयोग करके नया कैमरा व्यू कैसे चुनें
मैं मानता हूँ कि आपको पहले से ही पता है कि अपने सिस्टम पर ब्लेंडर कैसे संस्थापित करें
यदि नहीं तो कृपया ब्लेंडर संस्थापित करने के लिए हमारे पहले ट्यूटोरियल्स देखें
डिफ़ॉल्ट रूप से जब ब्लेंडर खुलता है 3Dव्यू यूजर परस्पेक्टिव व्यू में होता है
अब कैमरा व्यू पर चलते हैं
3डी पैनल के नीचे बाएँ कोने में व्यू टैब पर जाएँ
मेन्यू से कैमेरा पर बायाँ क्लिक करें
कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए नमपैड 0 दबाएँ
यदि आप लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके नंबर कीज़ नमपैड की तरह काम करने चाहिए
नमपैड का अनुकरण कैसे करें यह सीखने के लिए यूजर प्रिफरेन्सेस पर ट्यूटोरियल देखें
यह कैमेरा व्यू है
डॉटेड बॉक्स सक्रिय कैमरे का व्यू फील्ड है
इस डॉटेड बॉक्स के अंदर सभी ऑब्जेक्ट्स को प्रस्तुत किया जाएगा
रेंडर सेटिंग्स को अगले ट्यूटोरियल में सिखाया जाएगा
ब्लेंडर आपको अपने वर्तमान व्यू प्वॉइंट से समान बनाने के लिए सक्रीय कैमरे को उपयुक्त स्थान और अनुकूल बनाने की अनुमति देता है
देखते हैं कि यह कैसे करें
परस्पेक्टिव व्यू पर वापस जाने के लिए नमपैड ज़ेरो दबाएँ
आप देखते हैं कि कैमरा व्यू से स्विच करने के लिए शॉर्टकट नमपैड ज़ेरो एक टॉगल है
माउस व्हिल या एमएमबी पकड़कर रखें और जहाँ आप अपना कैमरा रखना चाहते हैं उस स्थान पर व्यू को घुमाने के लिए माउस को स्थानांतरित करें
मैंने यह स्थान चुना है
कंट्रोल Alt और नुम पद ज़ेरो दबाएँ
कैमरा नए स्थान पर चला जाता है
3डी व्यू उसी समय कैमरा व्यू में बदलता है
ब्लेंडर आपको कैमरे पर कुछ नेविगेशनल क्रियाएँ करने की अनुमति भी देता है जैसे रोलिंग पैनिंग ट्रेकिंग आदि
अब हम इन्हें देखेंगे
कैमरा चुनने के लिए डॉटेड बॉक्स पर राइट क्लिक करें
यहाँ से आप कैमरे का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं
जैसे आप किसी अन्य ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे
याद रखें कि इन कार्यों को करने के लिए आपको कैमरा व्यू में होना जरूरी हैं
पहली क्रिया हम देखेंगे कैमरा व्यू रोल करना
ऑब्जेक्ट को रोटेशन मोड में लाने के लिए अपने कीबोर्ड पर र दबाएँ
अब अपना माउस बाएँ से दाएँ और ऊपर और नीचे करें
डिफ़ाल्ट रूप से यह कैमरे को इसके लोकल z अक्ष में घुमाता है अर्थात अक्ष के चारों ओर जो कैमरा व्यू के अंदर या बाहर आता है
क्रिया को रद्द करने के लिए स्क्रीन पर राइट क्लिक करें या कीबोर्ड पर Esc दबाएँ
यह आपको आपके पहले कैमरा व्यू पर वापस ले जाएगा
अब अगली क्रिया हम देखेंगे कि कैमरा व्यू पैन हो रहा है
पैनिंग दो दिशाओं में है - बाएँ से दाएँ या ऊपर और नीचे
ऑब्जेक्ट को रोटेशन मोड में लाने के लिए र दबाएँ
एक्स दो बार दबाएँ
पहला एक्स रोटेशन को ग्लोबल X अक्ष पर बंद करता है
दूसरा एक्स रोटेशन को लोकल X अक्ष पर बंद करता है
हम ग्लोबल और लोकल परिवर्तित अक्ष के बारे में अगले ट्यूटोरियल्स में विस्तार से चर्चा करेंगे
अब माउस ऊपर और नीचे घुमाएँ
कैमरा व्यू ऊपर और नीचे घुमता है
अब य दो बार दबाएँ
पहला य रोटेशन को ग्लोबल Y अक्ष पर बंद करता है
दूसरा य रोटेशन को लोकल Y अक्ष पर बंद करता है
अब माउस बाएँ से दाएँ घुमाएँ
कैमरा व्यू बाएँ से दाएँ और विपरीत क्रम में घूमता है
कैमरा व्यू पर वापस जाने के लिए राइट क्लिक करें
अब हम कैमरा डॉली करेंगे
ऐसा करने के यहाँ दो तरीके हैं
पहला कैमरा पकड़ने के लिए जी दबाएँ
माउस व्हिल या एमएमबी पकड़कर रखें और माउस को ऊपर और नीचे घुमाएँ

दूसरा तरीका है आप इसके लोकल ज़ अक्ष के साथ कैमरे को स्थानांतरित कर सकते हैं
जी दबाएँ
फिर कैमरे को लोकल ज़ अक्ष पर बंद करने के लिए ज़ दो बार दबाएँ
अब माउस ऊपर और नीचे घुमाना एकही तरह का प्रभाव देता है
कैमरा व्यू पर वापस जाने के लिए राइट क्लिक करें
कैमरा व्यू को बाएँ से दाएँ या ऊपर और नीचे ट्रैक करने का अर्थ है कि इसे लोकल एक्स या य अक्ष पर घुमाना
जी दबाएँ
एक्स दो बार दबाएँ और माउस को बाएँ से दाएँ घुमाएँ
कैमरा व्यू बाएँ से दाएँ और विपरीत क्रम में ट्रैक होता है
अब य दो बार दबाएँ और माउस को ऊपर और नीचे घुमाएँ
कैमरा व्यू ऊपर और नीचे ट्रैक करता है
कैमरा व्यू पर वापस जाने के लिए राइट क्लिक करें
ब्लेंडर कैमरा के लिए फ्लाइ मोड भी प्रदान करता है
फ्लाइ मोड प्रविष्ट करने के लिए Shift फ़ दबाएँ
अब आप कैमरा व्यू को तीन तरह से घुमा सकते हैं
पहला है कीबोर्ड पर शॉर्टकट कीज का उपयोग करके
जूम इन करने के लिए कीबोर्ड पर द्व दबाएँ
जूम आउट करने के लिए एस दबाएँ
बाएँ जाने के लिए आ दबाएँ
दाएँ जाने के लिए डी दबाएँ
कैमरा व्यू पर वापस जाने के लिए राइट क्लिक करें
दूसरा तरीका है कैमरा व्यू को जूम इन और जूम आउट करने के लिए फ्लाइ मोड में माउस व्हिल या स्क्रोल का उपयोग करके
फ्लाइ मोड प्रविष्ट करने के लिए Shift फ़ दबाएँ
जूम इन करने के लिए माउल व्हिल ऊपर की ओर स्क्रोल करें
शॉर्टकट के लिए नमपैड दबाएँ
जूम आउट करने के लिए माउल व्हिल नीचे की ओर स्क्रोल करें
शॉर्टकट के लिए नमपैड - दबाएँ
कैमरा व्यू पर वापस जाने के लिए राइट क्लिक करें
कैमरा व्यू बाएँ से दाएँ और विपरीत क्रम में घुमाने के लिए आखिरी तरीका है फ्लाइ मोड में माउस व्हिल या स्क्रोल का उपयोग करना
फ्लाइ मोड प्रविष्ट करने लिए Shift फ़ दबाएँ
डी दबाएँ और माउल व्हिल को ऊपर और नीचे स्क्रोल करें
कैमरा व्यू बाएँ से दाएँ और विपरीत क्रम में घूमता है

कैमरा व्यू को बंद करने के लिए स्क्रीन पर बायाँ क्लिक करें
अब यह आपका नया कैमरा व्यू है
तो अब हम कैमरा व्यू नेविगेशन नेविगेशन - कैमेरा व्यू पर ट्यूटोरियल समाप्त करते हैं
अब एक नई फ़ाइल में कैमरा और कैमरा व्यू रोल पैन डॉली का स्थान बदलें और अपना कैमरा ट्रैक करें
और नया कैमरा व्यू चुनने के लिए फ्लाइ मोड का उपयोग करें
यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद